जो हम देख रहे हैं यह तस्वीर एक बस डीपो की है जिसमें काफी बसें हैं जो कि लाइन में लगी हुई है और ये बसे जो है --

डम्बल की सहायता से वेट लिफ्टिंग की सहायता से और पुश अप करके जो है हम अपना शरी --

ये पानी की ऊपरी सतह पर तैरती रहती है इनके जो पांव होते हैं वो झिल्लीदार होते हैं जिसकी मदद से ये अंदर चप्पू की तरह चलाती है उनको और जो है पैरती तैरती है ये पानी में होने वाले छोटे-छोटे कीड़ों को खा लेती है इनकी चोंच लंबी होती है और इनकी निगाह बहुत ज्यादा सटीक होती है जिसकी मदद से ये पानी में --